यहां पर रॉयल केनिन कुत्तों की डॉग कों की दवाई भी मिलती है।

ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है।

बहोत बड़ा दरवाजा लगा हुआ है यहां पर दो स्कूटी खड़ी है।

यह दोनों एक ही ई बाइक है एक मोपड़ है।

इस इमेज में एक बहोत बड़ा यूनियन बैंक है।

यहां पर एक ए_सी लगी हुई हैं।

ये एक बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह है ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है।

ये एक पहाड़ी एरिया नजर आ रहा है।

ग्राउंड जैसा नजर आ रहा है।

यहां पर बैठने के लिए टेबल बने हुए हैं।

यहां पर बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं।

यह एक बहोत बड़ा मेडिकल स्टोर है।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

यहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग है।